जे के अंदर के फोटो बा क्रास के चिन्ह इसा मसीह वाला बा कुल ढेर सारा पंखा लटकल बा लाइटिंग व्यवस्था बा।

ये कुल देखा कित्ता महंगा महंगा मशीन बा। सूत एक्सरसाइज करता लाल पीला हरा नीला दीवाल बा। आ लाइट कितना सुन्दर लागता।

देखअ केतना बढ़िया ड्रेस पहिंन के लईकी कुल डांस कर तारी सं भरतनाट्यम अ देख एक ठे मूर्ति लौउकता आ पीछे नक्काशी दार डिज़ाइन दार केतना बढ़िया शोरूम बनल बा।

मेला के सीन बा। कुल तरह तरह के डिजाइन वाला सब पा कान में के नाक में के सब लड़किन के कुल सामान बिकता कॉस्मेटिक के आइटम बा।

कितना नीक कुर्सिया लाल लाल रक्खले बा घुमाऊ दार कुर्सी बड़ा मजा आवत अहिपर बैठ बइठ के बाल कटवावे मे कुल सामान देखय कितना बढ़िया सजाउले बा अपने शैलून मे मैंट देखो कितना नीक ला --

हे कवनो बुक सेल्फ बा। हई बड़का सा अलमारी बनाके कुल किताब कॉपी रखल बा। तरह-तरह के किताब बा एक लाइन से सरियावल बा।

बस लगत आ बारात जाइ बदे तैयार भइल बा सजा ओजा के केतना बढ़िया गेंदा के फूल के लड़ी बनावल गइल बा अ इहइ सफेदका फुलवा से पूरा बसवा सजावल गइल बा नीचवा गेंदा के --

ई हो कोनो गुफा ऊफा के सीन बा पहाड़ के ऊपर अंदर काट के सब बनवले बाट सन आ देखा ह ई एगो आदमी --

देखअ जंगल जैसन लागता हरियर हरियर पेड़ बा खूब बड़ा - बड़ा आ देखनू पत्थर पे पत्थर चढ़ा के पूरा ये उपर खड़ा बा डरो नइखे लागत।